आते है बोहोत ही गाड़ी पेट्रोल भराने के लिए आते है जैसे टेंपू बस --

और यहाँ सूर्य का लाइट पड़ने पर --

पढ़ता है यहां पे बहुत बच्चे बैठे हुए हैं सब बच्चे ड्रे --